सामने बहोत बड़ी बिल्डिंग है वहां पर ये पेंट्रोल पंप बना हुआ है आगे--

कुर्सी पड़ी है कुर्सी के ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है यहां मैगी के और बिस्किट के पैकेट पड़े हैं।

और यहां एक आदमी खड़ा है माइक मे कुछ बोल रहा है पीछे सोफे पड़े है सोफे के ऊपर एक ब्लैक कलर का थैला पड़ा है।

सामने दरवाजा लगा हुआ है अल्युमिनियम का और नाम लिखा हुआ है देवांशी कलेक्शन स्टोर ।

अ इस रूम के अंदर और भी रूम है दरवाजा लगा हुआ है बाहर एक बेंच पड़ी है।

इधर बाहर के कोने की साइड एक रूम बना हुआ है रूम में कुछ आदमी में बैठे है बाहर बहोत सारी बेंच लगी हुई है कुर्सियां लगी हुई है।

यहां पे जैसे वे सामने एक बैग पड़ा है नीचे ठप्पा पड़ा है ठप्पे के ऊपर एक ब्लैक कलर का बैग पड़ा है यहां पर इस रूम के अंदर --

कुर्ता पैंट और चप्पल पहनी हुई है वो नीचे झुका हुआ है गाड़ी को तैयार कर रहा है।